इस चित्र में हमें बहुत सारी मछलियां नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें एक काली शर्ट पहने ग्रीन कलर का चस्मा लगाए हुए और ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए व्यक्ति --

पीछे हमें एक ओल मक्का का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

और सीधे हाथ पर हमें एक दिवाल नजर आ रही है ।

जिम जो है उसमे बहुत सारी अलग अलग मशीने दिखाई दे रही है ।

साथ में काले रंग की हमें चम्मच भी नजर आ रही है |